और आग जल रही है और सामने की तरफ भी दो आदमी एक खड़ा हुआ है एक बैठा हुआ है।

यहां हम एक यहां हम एक मकान के बाहर खड़े हुए हैं।

दो कुर्सियां पीछे की साइड और एक कुर्सी बीचमें पड़ी हुई है और एक मेज भी पड़ी हुई है एक डस्टबिन नीले कलर की रखी हुई है।

यहाँ हम एक बंदरगाह पे खड़े हुए हैं।

कुछ फूलों के पेड़ लगे हुए हैं।

और खजूर के पेड़ लगे हुएं हैं पीछे नीले कलर का जो है अं फर्श लगा हुआ हैं।

गमले गमले में पेड़ लगा हुआ है और एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है और जो है नीले कलर --

यहां हम एक सैलून के अंदर है।

और एक आदमी जो है मिरर पे टॉर्च रखे हुए दिखाई दे रहा है और बोतल्स रखी हुई है बोतल में कुछ लोशन रखा हुआ है।

यहां पर भी हम एक सैलून के अंदर खड़े हुए हैं आपके पीछे कुछ लोग बाल कटवा रहे हैं और जो है आगे की तरफ एक--

यहां हमें कंप्यूटर की शॉप पर हैं और जिसमें एक एल_सी_डी रखी हुई है।

यहां हम एक रोड के किनारे खड़े हुए हैं जहां पे काफी लोग सब्जियां खरीद रहे हैं और जो है एक कार जा रही है।

और जो है पीछे ए_ सी_ लगी हुई है सामने कुछ डिब्बे रखे हुए हैं लोशंस रखे हुए हैं।

दो पेड़ लगे हुए हैं एक पेड़ पे सीढ़ी लगी हुई है एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

और उपर लाइट लगी हुईं हैं नीचे की फर्श लगी हुईं हैं कार्पेट बिछी हुईं हैं सामने भी अलमारी मे कपड़े रखे हुएं हैं।

और सभी लोग उस मशीनो को देख रहे हैं और ऊपर रॉड जल रही है।

कई हमें बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिखाई दे रहे है पानी दिखाई दे रहा है।

और जो कि बहुत ही सुंदर नजारा लग रहा है और कुछ पेंट सूखे हुए हैं कुछ पेंट हरे भरे लगे हुए--

नीचे कुछ खजूर के पेड़ लगे हुए है कार खड़ी हुई है।

ये मंदिर का जो पेंट है वो--

और दुर्गा स्तुति लिखी हुई है पुरी--